एक भवन दिखाई दे रहा है जो की पत्थरों से ईंटों से बना हुआ है जो दिख रहा है यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

एक कमरा दिख रहा है जिसमे कुर्सी टेबल लगी हुई है जो दिखाई दे रही है सोफा रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है पंखे लगे हुए हैं बलप लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो दिखाई दे रही है एक खंबा गड़ा हुआ है जिस पर लाइट लगी हुई है वह दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक चबूतरे पर मूर्ति बनी हुई है जो दिखाई दे रही है एक टीन सेट बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है और टीन सेट के पास में कुछ कुर्सी रखी हुई है टेबल रखी है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर पहाड़ बनी पहाड़ दिखाई दे रही हैं पहाड़ो पर कुछ घर बनी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक टीन शेड बना हुआ है जिसमें भैंस खड़ी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक पानी का ड्रम रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है एक दिखाई दे रही है यहाँ पर एक शटर डली हुई है जो दिखाई दे रही है पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक पानी का तालाब-ता-तालाब बना हुआ है जो दिखाई दे रहा हैं जिसमें पानी भरा है।